जो इस रावन को देख कर बोहोत ही खुश होने वाले है।

यह एक पेट्रोल पम्प के बाहर की--

जहा पर इस पेट्रोल पंप में से बोहोत साड़ी गाडिया पेट्रोल निकलवा कर जा रही है।

यह किसी मिठाई की दूकान के अन्दर की--

बोहोत सारे खिलोने भी रखे हुए है यहाँ पर एक बेस भी रखी हुई है।

तिस्बे रखा है लोग अपना सिर धोते है और--

दीवार भी लगी हुई है जो बोहोत सुन्दर दिखा--

यहा पर येहे बोहोत सुन्दर गार्डन दिखाई दे रहा है।

बोहोत बड़े सनसेट के बहार के फोटो दिखाया जा रहा है।

यहाँ बोहोत बढ़िया सनसेट हो रहा है और निचे बोहोत साडी हरियाली भी दिखाई जा सकती है।

उनसे बचे पड़ कर अपने पढाई पूरी करते है और इन को खरीदने के लिए यहा बहोत सारी भीड़ भी लगी हुई है।

यह किसी जू के अंदर का बहुत बढ़िया और अद्भुत फोटो दिखाया जा रहा है।

वहा पीछे बोहोत सारे फोटो भी लटके हुए है।

बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया फोटो देखी जा सकती है।

यहाँ से पेट्रोल डलवाती है ओर अपने घर ओर रस्ते की और चली जाती है।

उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और पीछे बोहोत बड़ी बड़ी ए_सी भी --

यह किसी मॉल के अंदर की बहोत ही सुंदर और बहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रही रही है।

यहा पर बोहोत सारे एम्प्लोय भी बेठे हुए है।

और बहोत सारे करने वाले भी बेठे हुए है।

ये हे किसी ग्रोड के अंदर की बहोत ही सुंदर और बहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई जा रही है।

बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही बढ़िया फोटो दिखाई दे रही है जहा पर यह --

यहाँ पर बोहोत सारी खेलने का समान और खिलोने का सामना भी रखा हुआ है।

जिसमे बोहोत सारे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है।

ये किसी ब्यूटी शोर्ट के दूकान के अन्दर की--

यहा पर बोहोत सारी महिलाए अपना सामान लेने के लिए आई हुई है।

यहाँ बोरी और में बोहोत सारा सरसु गेहू चावल भी पड़ा हुआ है।

और यहाँ पर बोहोत सारा खाना भी पड़ा हुआ है जिसे बेच कर हम लोग बोहोत ही काम भी कर --

येहे किसी होस्पिटल की अंदर की बहोत ही बेकार और बहोत ही बेकार फोटो दिखाई जा रही है।

जहां पर कोई व्यक्ति अपने बेड पर लेट कर ही यह फोटो खींच रहा है सामने एक बहोत बड़ी टी_वी भी दिखाई जा रही है।

येहे किसी हिन्दू मंदिर के अन्दर की--

उनकी बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही बढ़िया फोटो भी है।

इसमें से बोहोत से लोग पूजा करें के लिए भी आते है और बोहोत सारे कार्ड बिखरके लेके जाते रहते है।

यह किसी खुले हुए ग्राउंड के अन्दर की--

यह ग्राउंड बहोत ही बड़ा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक वाशिंग मशीन की अंदर की फोटो भी दिखाई दे रही है।

यह किसी किराने दुकान के पास की बहोत ही सुंदर--

यह एक व्यक्ति की फोटो दिखाई जा रई है जो की--

ये साडी के सुर के अल्लर ही--

एक क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है और आस पास बोहोत सारे पेड़ पोधे भी रखे हुए है जो की बोहोत ही सुन्दर --

जो की एक झील के अंदर से पानी टपक रहा है जोकि बहोत बड़े बड़े पथरो की उपर से निकल रहा है।

एक किसी पेट्रोल पम्प के पास की बहोत ही सुन्दर बहोत ही बडिया फोटो दिखाई जा रही है जहा पर बहोत सारी गाड़िया पेट्रोल पम्प मे से पेट्रोल निकलवाने के लिए आई हुई है।

यहाँ पर गाडिया और बोहोत सारा पेट्रोल भी निकलता है और बोहोत सारा पेट्रोल भी दलता रहता है।

इसमें प्रॉफिट पार्टनर की एक फोटो दिखाई जा रही है अंदर बहोत सारे एम_आई के मोबाइल भी मिलते रहते है।

पालक गोबी भिन्डी आलू जेसी बहोत सारी--

रिय बेच रहा है जो की एक लकड़ी के ठगेल में बेच रहा है।

आस पास मार्केट में भी बोहोत भीड़ लगी हुई है।

बोहोत ही सुन्दर और बोहोत ही बड़िया फोटो दिखाई जा रही है।